एक दो तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का बस ऊपर का बोर्ड दिखाया गया है।

बहुत सारे रैक लगे हुए हैं जिसमें और भी पेंट के डब्बे रखे गए हैं।